एक पर्दा लगाया गया है जोकि प्रिंटेड है उस पर डिजाइन की हुई है पर्दे के ऊपर एक --

जिस पे दो टैक्सियां तेल भरवा रही हैं।

जिसमें दूब लगाई हुई हैं और चारों ओर पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

जहां पर टेबल कुर्सियां लगाई हुई है और गमलो के अंदर पौधे भी लगाए गए है और --

यह एक खिलौनों की दुकान हैं जिसमेें बहुत सारे टेडी के खिलौने भी पड़े हैं और इसमें --

यह तस्वीर किसी अस्पताल की दिखाई दे रही हैं और इस हस्पताल में --

कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर सेल सर्विस एवं उनकी रिपेयरिंग की जाती है।

ब्यूटी पार्लर की है जिसका नाम अनुपम हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी पार्लर है।